ईटों की दीवार बनी हुई है ईटों की दीवार में दो पिलर दिख रहे है बड़े-बड़े से बीच में दो गेट लगे हुए है कत्थई कलर के उन पे भी डिजाइन बना हुआ है ईटों का गोल ऊपर लोहा दिख रहा है सड़क है।

बाहर के पार्क में बहुत ज्यादा पौधे लगे हुए है हरे कलर के पिंक कलर के फूल भी निकल रहे है क्यारी बनी हुई है बीच में पौधे लगे हुए --

ट्रेन चल रही है कत्थई कलर की ट्रेन है आगे नीले कलर का उसका --

एक बड़ा-सा रोड है बड़ा-सा रोड के सामने होंडा का शोरूम है रेड कलर का व्हाइट कलर की बिल्डिंग के अंदर जीने डले हुए है रोड के बीच में एक लंबा सा खंभा है।

रोड हैं रोड पे गाड़ियां चल रही है दो तीन लोग जा रहे है एक आदमी हेल्मेट लगा के जा रहे है एक रेड कार जा रही है एक गाड़ी खड़ी हुई है उस पे सामान रखा हुआ है।